प्लास्टिक वाला एलोप्लेन भी दिखाइ दे रहा है।

जिसमें येलो कलर की लाइट भी जल रही है।

और बहुत सारे अलग अलग झूले लगे हुए हैं।

अन्दर बहोत सारे फूल लगे हुए है पिंक कलर के--

फोटो में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है सेल ।

पीछे एक घर बना हुआ है घर का कलर वाइट कलर का है।

इस पे लिखा हुआ है मधुरमे भोग प्रसाद।

वाइट कलर के खंभे लगे हुए हैं।

फोटो में एक झुमर लगा हुआ है।

व्हाइट कलर की टाइल्स भी लगी हुई है।

फोटो में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में बहोत सारे पंजाबी लोग बैठे हुए हैं।

फोटो में तीन झूमर दिखाई दे रहे हैं।

एक मेट्रो ट्रेन भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में बहोत सारे लड़के बैठे हुए हैं।

जिसमे बहौत सारे लोग एक जैसी ही कॉस्ट्यूम पेहने हुए है।

और छोटी छोटी खिड़कियां भी लगी हुई हैं।

जिसपे एक बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा।

नीचे कालीन बिछी हुई है एक कुर्सी भी रखी हुई है।

और वाइट कलर की रेलिंग भी लगी हुई है।